और इसमें एक नोटिस लिखा हुआ है ।

और जमीन खोदा हुआ है जगह-जगह पे घर के बाहर एक छोटा-छोटा पौधा लगा हुआ है घर के पीछे --

यह एक छोटा सा घर है जंगलो के बीचों-बीच घर बना हुआ है बाहर से कटीले कटीले तरह का झाड़ी है।

यहाँ दो लड़का जयमाला स्टेज पे बैठा हुआ है एक हस रहा है और एक सीधा से फोटो खींचा रहा है पीछे में गणेश जी का मूर्ति भी है।

भारत का लगभग सबसे लम्बा पूल है यह पटना में स्थित है और यहाँ ऊपर में एक कबूतर बैठा हुआ है ।

यह उर्दू में लिखा हुआ है यह लग रहा है जैसे कोई कॉलेज है यहाँ पे बहुत सारे साइकिल लगा हुआ है दो व्यक्ति --

स्पोर्ट वर्ल्ड है यहाँ पे साइबर का भी काम किया जाता है यहाँ पे बच्चे पैसे देकर गेम खेलते हैं यहाँ पे खेलने का सामान फेवी-क्यूक बॉल --

कुर्सी लगा हुआ है और सीढ़ी से ऊपर की ओर व्यक्ति चढ़ते है यहां पे स्टार लगा हुआ है और लाइट भी जल रहे है सीढ़ी पर यहां पे लोग फिल्म देखने के लिए आते है साथ।

यहां पे शादी होता है यहां पे अच्छे से भोजन भी किया जाता है इसमें डी.जे. भी रहता है लेकिन बाहर आवाज नहीं आता अंदर में हरेक काम कर सकते है यह बड़े-बड़े शहर में --

क्रिकेट का क्रिच है यहाँ पे विकेट भी गड़ा हुआ है लेकिन कोई प्लेयर खेलने के लिए यहाँ पे अभी नहीं आया है यहाँ पे ।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

कुछ है यहां पे छोटे-छोटे बच्चे है एक बच्चा उम्म मंच पे भाषण कर रहा है और एक व्यक्ति मंच के बगल में नाम --